और यहां पर अंदर सी_टी_वी_वी कैमरे लगे हुए हैं।

ये जो तस्वीर नजर आ रही है ए तस्वीर एक समंदर के पास एक नदी के पास की एक तस्वीर नजर सराही है।

एकअ मंदिर नजर आ रहा है और कुछ जगह नजर आ रही है सफेद कलर की।

तस्वीर आपको दिख री है ये समंदर की तस्वीर है जहां पर नाव नजर आ री है और यहां रेत भी नजर आ री है और ये उसके उस पानी के अंदर एक अनोखा सूरज नजर आ रा।